बैंक में इंटरेस्ट लेना और देना दोनों इस्लाम में हराम है। बैंक में यह कार्य होता है।

बच्चे के अंदर सुधार पाए। बच्चा बोहोत ही अच्छा हो जायेगा पढ़ने में। बच्चे कंप्युटर भी सिखाया जायेगा।

यह एक शाही मस्जिद मस्जिद में इबादत --

और कमरा बना हुआ है यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं मन लगा कर |

देखिये बहोत ही अच्छा एरिया है और धंधा चल सकता है।

और यह एक छात्रावास की बिल्डिंग दिख रही है जिसमें छात्र रहते हैं।